किसी का नेम प्लेट भी लगा हुआ है और बगल में हमें डोर बेल भी दिखाई दे रहा है और अंदर में बोहोत सारे --

और इसके अंदर सभी पे सभी गाड़ियों के टायर भी मौजूद है।

मूर्ति जो है वो गोल्डन और ब्लैक कलर का है जिसमें--

और बगल में एक वैन भी खड़ी दिखाई दे रही है।

और पीछे व्यक्ति ने एक वाइट कलर का हाफ शर्ट पहना है और उधर फायर एग्जीक्यूटर लगा हुआ है।

गाड़ीयां खड़ी है और ऊपर में बी_यू_म_बी का एक ब्रांच भी नजर आ रहा है और इस शोरूम में काफी ब्लू लाइट लगाए गये--